इस फोटो में यहां पर देख रहे हैं ये एक--

पार्क है और यहां पर एक झूला है इसमें एक--

गाड़ी खड़ी है यहां पर--

और यहां पर एक डैम --

इस फोटो में हम सब देख रहे हैं।

चीज़ दिख रही है।

यहाँ पर बहुत सारे फ्लैग --